एस.एस.सी. बैंकिंग रेलवे एंड अदर एग्जाम का बोर्ड लगा है।

कुछ लोग मॉल से बाहर आ रहे है कुछ मॉल के अंदर जा रहे हैं यहाँ पे अलग-अलग फ्लोर है यहां पे अलग-अलग डीपार्टमेंट्स है जिसमे एक मे अम बच्चों का समान मिल रहा है एक मे बड़ों का और यहाँ पे लोग बहोत सारे लोग शॉपिंग करके जा --

एक चेयर रखी हुई है बोर्ड के अंदर स्टेथोस्कोप एण्ड सामान रखा है लकड़ी का बोर्ड है व्हाइट कलर की दीवार है।